सामने एक जाली के अंदर एक शेर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जो की सामने की ओर देख रहा है उपर एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

सामने एक खुली मैदान मे सोफ़ा सेट वाली लंबी कुर्सी राखी हुई नजर आ रही है जिसपे लकड़ी बानस पोथा गया है।

और ऊपर खुला आसमान नजर आ रहा है। सामने ये रोड ईट के आकार के जैसा दिखाई दे रहा है डिजाइन किया हुआ --

और सामने से एक शटर गई हुई है जिसके द्वारा इस मैदान मे पानी दिया जा रहा है जिसे की बहुत सारी और भी हरी भरी घास आस उगाये सामने और भी लंबे लंबे पेड़ भी लगे हुए है एक लेडीस भी बैठी हुई दिखाई दे रही है।